और एक महिला और एक बच्ची चेयर के ऊपर खड़ी है और बिल्डिंग और पेड़-पोधे नजर --

यहां पर एक शिवलिंग रखा हुआ है रथ रखा हुआ है छोटी-छोटी काफी सारी मूर्तिया जोके गेंदे के फूल रखे है और लाइट से सजाया गया है।

और उसने एम येलो कलर की कैप लगाई हुई है और ऑरेंज कलर का यहाँ पर ड्रेस पहना हुआ --

यह एक मंदिर की तस्वीर है जहां पर काफी सारे व्यक्ति नजर आ रहें हैं ऊपर आसमान नज़र आ रहा है एक व्यक्ति ने काले रंग की टीशर्ट पहना हुआ है।

ऊपर दो बल्ब जल रहे है और दो यहां पर स-सी --